नीचे एक महिला साड़ी में खड़ी हुई नजर आ रही है उसके साथ में एक बच्ची भी दिखाई दे रही है।

बाहर एक कैरम भी नजर आ रहा है और बैट्स भी--

जिसमें बहोत सारे सामान पड़े हुए और नजर आ रहे हैं।